देखने में हमको बहुत खूबसूरत लग रहा है डिज़ाइन इसका मस्त है।

उस आती है इसमें से।

हमलोग इसे घूम बोल सकते है मिन मिनिमम दुरी के लिए --

बगल में नदी है इस् पे गाड़ी चल रही है लाइट लगा हुआ है ।

डेस् है केबिन बनाया हुआ है कपड़े अच्छे-अच्छे तरह का है।